बायस सो हो रहा है कोम्प्यूटर सो हो रहा है कीपैड दिख रहा है मुझे यहां पे बेंच दिख रही है और एक माउस दिख रहा है और यहां पे कुछ लोग दिख --

फोटो एक हॉल की है जहा पे एक सैंटा क्लोज़ बना हुआ है कुछ लोग सैंटा क्लॉज़ की केप्स लगाए हुए है स्टार्स शो हो रहा है ब्लू कलर के पर्दो से इसको डेकोरेट किया गया है।

वोल्स पे ड्रॉइंग दिख रही है बाइक्स की विलेन की बल्ब दिख रहे है लाइटिंगस दिख रही है।

ये एक चर्च है उसका नाम ब्लू और वाइट कलर से लिखा गया है यहा पे चर्च की क्रोसेस दिख रहे है देन यहाँ मुझे एक गेट दिख रहा हैं।

यहाँ पे कुछ भगवन की मूर्तियां दिख रही है शंक दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर गाडी खड़ी है पोधा लगा है और उसमे बहोत सारी विंडोज दिख रही है यहाँ और फ्लोर्स है।

यहा पे मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है जो गुलदसुल सजाया गया है पास में एक गमला दिख रहा है लाइटिंग दिख रही है और ब्लैक पोस्टर दिख रहा है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।